दिन का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके बाहर पीलर बने हैं कुछ शटर काला है ऊपर से बोर्ड बना जिसके ऊपर कुछ लिखा दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग की खिड़कियां दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कुछ झालर टंगी दिखाई दे रही है जो नीले और गुलाबी कलर की दिखाई दे रही है।

किसी नदिया या तालाब का फोटो दिखाई दे रहा है नदियों का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है साइड में कुछ दिखाई दे रही हैं।

हॉल बना हुआ दिखाई डे रहा है इस के अंदर पिलर बनी हुए दिखाई डे रही है पिलर के ऊपर कुछ फूल लगी हुए दिखाई डे रही है पीचूय की साइड कुछ खिड़किया दिखाई डे रही है सामने कुछ लिहाय क टेबल लगी दिखाई डे रही है ऊपर सामन्य एक बड़ा सा गेट लगा दिखाई डे रहा है।

झालर और टांग कर रखी दिखाई दे रही है ऊपर छत पर दो पंखे दिखाई दे रहे हैं | छत वाइट कलर की दिख रही है | निचे प्लास्टिक की चेयर स्टील की चेयर रखी दिखाई दे रही है साइड कुछ खिड़किया बनी दिखाई दे रही ।

सामने कुछ फ्रीजर में नीचे ड्रिंक की बोतल दिखाई दे रही है फ्रीजर के नीचे कुछ बैनर लगा है जिसमें लाइट जल रही है और कुछ उसके अंदर केक की डिज़ाइन पीछे की साइड में कुछ अलमारियां बनी दिखाई दे रही--

ऊपर वाले साइड पर एक छोटा सा बैनर पोस्टर बना सा बोर्ड लगा हुआ इसके ऊपर सफेद अक्षरों में कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा दिखई दे रहा है। निचे के साइड में का हिस्सा और अंदर के साइड में एक नीला बोर्ड --

बड़ा सा बोर्ड बना हुआ जिसकी हमे लोग और इंग्लिश में कुछ नाम लिखा हुआ दिख रहा हे एक साइड खेती दिखाई दे रही है।

सामने एक कार खड़ी दिखाए दे रही है। निचे के साइड से पोस्टर पीछे से कुछ एक पाइप लाइन जाती हुए दिखाई दे रही है। पोस्टर के ऊपर गोल डिज़ाइन और कुछ पत्ते की डिज़ाइन बनी हुई दिखाई दे रही है। पीछे बिल्डिंग पिले और अस्मिने कलर के पटटे में बनी हुई दिख रही है। पीछे के साइड में निचे गेट बना हुआ दिख--